और इसके अंदर जो टेबल है टेबल पे काफी अच्छा प्लांट रखा हुआ है| यह होटल बहुत ही अच्छा दिख रहा--

ये देखिये फ्रेंड्स ये नदी के किनारे का नज़ारा है काफी अच्छा है।

ये देखिये आपको यह दिख रहा है टीटण टाइम सिटी सेंटर जो की कहाँ है पूर्णियां में ये पूर्णियां का है।

ये पूर्णिया का गर्ल्स इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल है जो की कहां पुरनिआ में--

ये देखो कबड्डी का मैच चल रहा है कई लोग देख रहे है यहा पे एन्जॉय कर रहे है ये देखो ये पूर्णिया का है ये पूर्णिया का प्लेग्राउंड हैये देखो लोग इनको देख रहे है ये खेल रहे तो।

ये पूर्णिया का शॉप है देखो कितनी अच्छी गाड़ियां खड़ी हुई हैं जो कि शोरूम के अंदर लोग आते है लेते है का ये शॉप पूर्णिया का है।

ये पूर्णियां की चर्च है उसके सामने काफी बड़ा ग्राउंड है ये देखिये और यह झाड़ी लगे हुए हैं राइट साइड से वहीं एक बैनर है जहाँ पे कुछ लिखा है यह चर्च के पास।

ये दे फ्रेंड्स आपको यह पूर्णियां का सुजुकी दिख रहा है शोरूम जो शोरूम किसका है सुज सुजुकी का ।